फोटो में हमे एक अ पेट्रोल पम्प दिख रहा है। सामने सड़क दिख रहा है और उस सड़क में कुछ स्कूटी चल रहा है। --

पम्प से कुछ अ बाइक बहार आ रहा है। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के अंदर बहुत सी लौड़ी और बाइक दिख रहा है।

फोटो जो है किसी अअअ शोपिंग मॉल के शोपिंग सेंटर के अंदर से खीचा गया फोटो है।

सामने जो दिख रहा है वो एक बेंच दिख रहा है जो स्टेशन में बेठने वाला बेंच है और म अ स्टेशन के बगल में बोहोत सारा पेड़ दिख रहा है।

फोटो में हमें एक पहाड़ टाईप {type) का कुछ दिख रहा है जिसमे नदी बह रहा है और आस पास छोटा-छोटा छोटा-छोटा झाड़ी है और कोई लोग नही दिख रहा है। ऊपर आसमान दिख रहा है।}

फोटो में एक सामियाने के ऊपर का जो अ होता है वो दिख रहा है जो फुल डिजायन किया हुआ है बहुत खुबसूरत लग रहा है।

ये सायद राजस्थान का गाड़ी है और पीछे एक बिल्डिंग है सायद कोई सरकारी बिल्डिंग है और बगल में बोहुत सारा गाड़ी खड़ा हुआ है।

फोटो में हमें एक मंदिर की सामने से खिंचा गया हुआ फोटो है जो एक शिव भगवान की मंदिर है अंदर हमें एक शिव भगवान का मूर्ति दिख रहा है।

फोटो में हमें दो जलहस्ती दिख रहा है जो शायद कोई अ जू में है सामने बहुत पीछे बहुत सारा जंगल है।

बोहोत सारे लोग खरीदारी कर रहा है। बोहोत लोग बेच भी रहा है और बोहोत सारा सामान बिक रहा है। एक पेर है मंडी के बीच में साईड में कुछ घर टाईप का कुछ बना हुआ है। एक बाई दिख रहा है कुछ हुआ दिख रहा है पेड़ के नीचे।